कार की नाव की शेप है कोई अलग अलग मतलब ठीक है कुछ सिंपल है।

और यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है।

खंभा लगा है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक लड़के का पैर दिख रहा--

और यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा--

नीचे लिखा है। स्काई लुक होटल शांतमय बिल्डिंग का कलर है ब्राउन एंड व्हाइट ।

क्या कहते है ये बिजली की चलती है।

कैमरा लगा है एक ए_सी भी लगा है दीवार जो है वो ब्लैक कलर की हैं।

दीवार येलो कलर की दिखाई दे रही है ये वाली।

ठीक है बड़ी सी बिल्डिंग है कुछ तारे हैं एक बाइक खड़ी है कार के आगे--

इस फोटो में बाहर कुछ पेड़ पौधे हैं। एक फोटो है एक एक्टिवा है।

ठीक है और रात का समय दिखाई दे रहा है डेकोरेशन हो रखी है।

पेड़ पौधे हैं साइड में इमरजेंसी वार्ड है ठीक है लिखा है आपात आपातकालीन इमरजेंसी नीचे लिखा है ड्राइव स्लोली एक ऑटो है।

यहां पर एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है एक लड़का चेयर पर बैठा हुआ है।

उनकी चूड़ियां हैं यहां पर काफी सारा कलेक्शन है बिंदी के पैकेट्स हैं इनके पास।

ये उपर लिखा हुआ है जिम ठीक है जिम है यहां पर उ और सिनेमा है मक्डोनल्ड है।

दिन का समय दिखाई दे रहा है बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

इस फोटो में कुछ बसेस ओह सॉरी ऑटो दिखाई दे रही है दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।

अअ मिट्टी नजर आ रही है काफी सारी मिट्टी है।

साइड में कुछ पैकेट्स हैं लेज हैं।

और नीचे लिखा है रोहतक ब्रांच ए गवर्नमेंट आफ इंडिया अंडरटेकिंग --

कुछ यहां पे पौधे दिखाई दे रहे हैं।